पांच आदमी खड़े हुए हैं एक आदमी कार के सामने खड़ा है और वो कुछ कार की मरम्‍मत करने वाले लग रहे हैं।

और काफी सारे पेड़ हैं किसी जंगल का दृश्य लग रहा है और काफी सुन्‍दर हैं।

ये एच.डी.एफ.सी. बैंक के बहार का एंट्रेंस है और लोग खड़े हुए हैं सामने ए.टी.एम. भी लग रहा हैं मुझे कुछ औरते भी हैं शॉल ओढ़े हुए और सामने एक गार्ड अपनी डयृटी कर रहा है।

और काफी सुन्दर सा है।

ये एक स्‍टेज है और फूलों से सजा हुआ है स्‍टेज में और दुल्‍हन खड़े हैं और--